इस फोटो में हमें ये देखने को मिल रहा है की कोई बच जो आदमी है वो प्लांटेशन कर रहा है पेड़ लगा रहा है।

फोटो लग रहा है सैलून का ही फोटो --